बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फोटो में खिड़की दिखाई दे रही है।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

एक बेंच दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो में टेबल दिखाई दे रही है मुझे--

मुझे इस फोटो में एक क्रिश्चनों का मंदिर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक चप्पल दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में लाइटें दिखाई दे--

मुझे इस फोटो में दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस फोटो में एक परफेक्ट कार का शोरूम दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारी कारें दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे टेंट दिखाई--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

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

बहोत बड़ी द सिटी का बोर्ड दिखाई दे रहा हैं।